और साथ ही में पीछे बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं बीच में बहुत सारे घर बने हुए हैं जो की अलग-अलग कलर के घर हैं एक नदी और एक ब्रिज भी दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर एक मंदिर टाइप का दिखाई दे रहा है जो की दो मंज़िला है यहाँ पर जालियाँ लगी हुई है।

जैसे की मै देख रही हूँ यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है जिससे पीछे एक बहौत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

जैसा कि मैं देख रहे हैं यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें घर दिखाई दे रहा है जो की नीले रंग से पुता हुआ है।